आप देख सकते है इसमें हमे एक ट्रक दिखाई दे रही है और सनलाइट दिखाई दे रहा है।

आप देख सकते है इस पिक्चर में हमे देखने को मिल रहा है कि इसमें बहोत ही अच्छा खुबसूरत वेव है जहाँ पर हमे बब्लू डेरी का शॉप की--

हरा झंडा सफ़ेद झंडा अः नीला झंडा पीला झंडा।

इस पीक में हम नज़र आ रहा है कि इसमें बहोत सारे खूबसूरत व्यू आ रही है।

इसमे हमने दो सीट्स देखने को मिल रही है जहां पर फ्लोरिंग की गयी है क्रीम कलर टाइल्स लगे हुए है एंड जो मिरर है इसमे लाइट्स लगी हुई है।

पर हमें सॉस मिल रहा है जैम मिल रहा है फ्लेवर्स मिल रहे है चॉकलेट्स मिल रहे हैं।

इसमें इसके बाहर हम स्कूटी देख सकते है इसके गेट के बाहर--

खूबसूरत डेकोरेशन है जहाँ पर हमे ये मंदिर मिल गया है।

इस पिक् में हमे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत ही सारे अम्म लोग जमा हुए है।